यह एक होलसेल दुकान टाइप में है जिसके सामने में एम_डी_एच मसाला का बहुत सारे डब्बे रखे हुए हैं जो की बहुत ही बड़े बड़े पेटी है।

और यहां पे पीछे में एक भगवान का तस्वीर भी लगा हुआ है और गेट में ब्लू कलर से पेंट किया हुआ है जो शटर गेट है।

और नीचे में विम जेल रखा हुआ है जो बर्तन धोने में काम आता है और ब्लू कलर का अलमारी है जिसमें सारा प्रोडक्ट रखा हुआ है।

पोस्टर में सटा हुआ है और सामने में एक बेंच रखा हुआ है।

उसमें लाइट भी लगा हुआ है और हरा हरा पेड़ है और साइड में एक बिल्डिंग है।

कोई नाई है शायद वाइट कलर का शर्ट मे खडा है।

लाइट भी पिलर में लगा हुआ है जो की पोल टाइप का लोहा का बना हुआ है।

वाइट कलर का पेंट किया हुआ है और उसमें कुछ लिखा हुआ है।

स्विमिंग पूल में ब्लू ब्लू कलर का लाइन बना हुआ है।

और ग्रीन ग्रीन छोटे छोटे घास भी हैं।

मिट्टी कलर का मार्बल भी लगा हुआ है और वॉटर पोट में कमल का फूल लगा हुआ है।

और साइड में तस्वीर टंगे हुए हैं दीवार पे और गेट लगा हुआ है।

यह एक बहुत ही बड़ा घर है शायद साहू मोटर्स लिखा हुआ ह--

रेड कलर का जाली से भी घिरा हुआ है।

स्टॉल के सामने में बिस्कुट से भरे हुए डब्बे रखे हुए हैं और रेड कलर का बॉटल भी रखा हुआ--

चाय का गिलास भी रखा हुआ है जो कि कांच का भी है और एक स्टील का भी है।

बेहतरीन बेड है। जिसमें व्हाइट कलर और ब्लैक कलर का पेंट किया हुआ है। और बेड के पी अ मतलब मुड़ी तरफ में पेड़ का निशान बना हुआ है।

सोफा मे वाला मतलब कंबल रखा हुआ है और बगल में एक और शॉप है।

इधर साइड में ग्राउंड में जाने के लिए सीढ़ियां बने हुए है और ग्राउंड के साइड साइड मे पेड़ पौधे बहुत सारे लगे हुए है।

पैलेस के पीछे मे एक टावर है और पोल भी है और उसमें लाइट भी लगा हुआ है।

यह कोई पार्क लगता है जिसमे बहुत ही सारा हिरन दिख रहा है और चरखुटा चरखुटा बॉक्स बना हुआ--

पानी भी गिरा हुआ है। जिसे पाका भीगा हुआ है और पत्ते भी हैं हरे हरे और पेड़ भी हैं।